कुर्सी टेबुल लगा हुआ है ग्रिल उरील है लाईट उट जल रहा है और ऊषा कंपनी का दुकान हैं।

वाइट कलर से भी है एसनौलि कलर से भी है।

बहुत अ अच्छा सजावट है। बहुत सुन्दर है। गुलाब का फूल लगा है। गुलाब कलर का एक आदमी भी खड़ा है।

भी है चारगो-पांचगो खम्बा भी लगा हुआ है।

बहुत बड़ा मॉल है। इसमें बुलु कलर का का खूटा दिया हुआ है ब्लैक वाला है।

फूल है गेदा का जिसमें हरा डंडी है <noise> और लाल फूल है गुलाब का फूल है। <noise>

यहाँ पर आदित्य कार का दुकान है जिसमें कार मिल रहा है बाइक मिल रहा है बहुत बड़ा दुकान है।

उ लड़की कह रहा है ग्रिल लगा भी है।

यहाँ पर बहुत बड़ा फील्ड है जिसमे पौधा है बहुत हरा-हरा और रोड भी बना है और --

और टेबल भी रखा है दो गिलास लगा है थाली अ फूल है कुर्सी भी लगा है गाछी भी है।

यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक है। बहुत बड़ा है। लगा हुआ है तार लगा हुआ है।

सामान उमान है और मास्क भी लगाया रस्सा भी टाँगा हुआ है सब्जी भी लगा हुआ है बगल में।